यह ए_के की शॉप है जिसमें एक बड़ा काउंटर रखा हुआ है जिसके अंदर बहुत सारे केक रखे हुए हैं।

यहां पर कुछ चॉकलेट पेस्ट्री भी रखी गई है जो देखने में बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही है।

इसमें दो कैंडल भी रखी गई है चॉकलेट की।

हम मेज पर तीन आकृति रखी हुई है जो दिखने में ऐसी लगती है की यह ट्रॉफी है।

थोड़ी ही दूरी पर कुछ मकान दिखाई दे रहे हैं यहां कुछ वनस्पति भी दिखाई दे रही है।

जिसमें एक खजूर का पेड़ खड़ा है और एक कुत्ता आ रहा है।

इसमें बहुत सारे पेड़ खड़े हैं यह नजारा बहुत सुंदर है।

जिसका नाम विजन बुक सेंटर स्टार्टिंग ओनर है।

जिसमें कुछ लड़ी से सजावट की गई है।

एक व्यक्ति के पास तेल की कैनी रखी हुई है तथा कुछ छप्पर भी गिरे हुए हैं।

इसमें व्हाइट कलर का पेंट किया हुआ है आउर आउर चॉकलेट कलर का कलर भी किया गया है।

यह चित्र एक दुकान का है।

ये कुछ प्लेट में मच्छी रखी हुई है जो मर चुकी है।

इन मच्छीयों की गिनती नौ है लगता है की मच्छी मोगरा है।

यह सीन एक रोड का है जिसमें एक बड़ा टेंपू खड़ा हुआ है टेंपू का कलर पीले कलर का है।

एक लम्बे बांस पर एक झंडा भी लगा हुआ--

मकान में बहुत सी जंगलें लगे हुए हैं जंगलों में कांच लगा हुआ है।

यहां पर कुछ बच्चे योगा कर रहे हैं जो धरती पर मैट बिछा कर योगा कर रहे हैं।

और एक सोफा भी दिखाई दे रहा है बेयरली साइड एक गाड़ी भी खड़ी हुई है।

ट्रैक्टर की पिछली साइड एक एक टीलर पिलर भी जोड़ा गया है ट्रैक्टर पर छतरी ब्लू कलर की लगाई हुई है।

यहां पर कुछ ध्वनि उपकरण रखे गई है जिनमें से कुछ स्पीकर है तथा कुछ बेस है यह दो दुकान के स्वामी है।

यहां पर नो स्मोकिंग भी लिखा हुआ है।

यह एक दुकान का सीन है जहां पर कपड़े क्लीन होते है।

दुकान के अंदर एक बोर्ड लगा हुआ है तथा बराबर में ही एक शीशा हुआ शीशा भी लगा हुआ--

पूल में चार पिलर दिखाई दे रहे हैं।

और कुछ व्यक्ति इनको खरीदने के लिए आए हुए हैं एक व्यक्ति कुर्सी पर बैठा हुआ है।

और सामने कुछ मकान भी दिखाई दे रहे है जिसमें व्हाइट कलर का पेंट हो रहा है और एक टंकी रखी है।

उसके पास में ही एक दुकान है जिसमें कुरकुरे और किताबें धरी गई हैं।

हमी एक व्यक्ति बैठा है बोर्ड के ऊपर कुछ लम्बर भी लिखे हुए हैं।

यहां पर दो लड़की खड़ी हुई है जिसमें से एक लड़की ने रेड रंग की टीशर्ट पड़ी हुई है।

सर उन्हें अपने ब्लैक बोर्ड पे समझा रहे हैं स्टूडेंट की संख्या कुल बारह है।

पेड़ में ही एक लाइट लगी है और बराबर में एक बड़ा सा घर है जिस पर व्हाइट कलर का पेंट हो रहा है।

स्टूल के ऊपर एक वाइट कलर की बाल्टी रखी है।

वह अपने बाल कटवा रहे हैं उनमें से एक व्यक्ति ने गले में तोलिया बांधा है।

यह दृश्य एक गार्डन का है जो बहुत सुंदर है जिसके अंदर एक लाल कलर की मशीन भी रखी गई है घास काटने की।